और यहाँ पर डस्टबीन रखे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर लोहें का बड़ा-सा --

और यहाँ पर लोहे का गेट है दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लाल कलर की चेयरे दिखाई दे रही हैं।

ये बैठकर अमम आपस में बात करते दिखाई दे रहे है। कुछ बाइक खड़ी दिखाई दे रही हैं और एक बाइक खड़ते--

ये मुझे एक म्यूजियम दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये सामान्य मुद्राए रखी दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर ये लाइटे दिखाई दे रहे और ये पूरा अन लाइट से बहोत बड़ा सा दिखाई दे रहा है।

यह मुझे एक कलोनी जैसी दिखाई दे रही है जो ऊपर भी घर दिखाई दे रहे है नीचे भी दिखाई दे रहे है।

ये एक जंगल दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहोत बड़ी - बड़ी चट्टानें दिखाई दे रही हैं।

उसके आजु-बाजु कुछ जंगल दिखाई दे रहे और कुछ प पेड़ पौधे दिखाई दे रहे।